अल रंग के हमें दिखाई दे रहे हैंलगे हुए हैं।

पानी का झरना है सफेद सफेद पानी निकल रहा है।

हमें एक सफेद बिल्डिंग में खिड़कियां बनी नजर आ रही हैं कांच लगे हैं।

ऊंचे ऊंचे अम्म्म पत्थर बने हुए हैं और उन पे--

फर्श नजर आ रहा है और नीले और गुलाबी रंग की दरी बिछी है।

तस्वीर के अंदर बहुत सारे हरे-हरे और कुछ पीले पेड़ भी हमें नजर आ रहे हैं।

तस्वीर के अंदर हमें गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं।

और पीले सन फ्लावर भी लगे हैं हरी हरी हमें--

रॉबिंस लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है।

सीढ़ियां बनी है और एक बड़ा सा लोहे का गेट है।

और हमें अअएक जगह दिखाई दे रहा है।

तस्वीर के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग है हमें दिखाई दे रही है।

हरी हरी घास लगी हुई है।

गुलाबी रंग की साड़ियां पहनी है और एक महिला ने सफेद रंग की पहनी हुई है साड़ी--

ऊपर तक बिल्डिंग बनी है पीले रंग की।

और हमेंअअमिर्ची बना हुए नजर आ रही हैं।

कार पर पेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है ये आदमी।

ऊपर नीला नीला आसमान है और बिजली के तार हैं।

एक ए_टी_एम मशीन दिखाई दे रही हैं नीली नीली हमें उसकी स्क्रीन नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक लड़का दिखाई दे रहा है हमें और पीछे से नज़र आ रहा है उसका सिर --

सामने एक बड़ा सा कांच है और बॉटल्स रखी नजर आ रही हैं।

तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है नाम लिखा है ऊपर बोर्ड पर साड़ी लिखा है।

हर सा खा हर साड़ी की खरीद पर एक चांदी का सिक्का फ्री लिखा है।

दूर हमें एक बड़ा फ्रिज पेप्सी जिस पर लिखा है नजर आ रहा है लाइटें जल रही हैं।

नीचे भी हमें हरी लाइटिंग और नीले कलर की लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

सड़क दिखाई दे रही है वहां भी हरी-हरी घास है।

खिड़कियां और दरवाजा बना हुआ है।

बिल्डिंग बनी हुई हैबड़ी सी सफेद रंग की--

और हमें नीला आसमान बिजली के तार--